यहाँ पे ऊँपर से लाइट आ रही है शीशे पे और शीशे के अन्दर --

इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है कोचिंग इंस्टीटूशन का एस बी एस इंस्टीटूशन ऑफ़ कोचिंग --

और टोपरस के लिए है वी क्रिएट टोपरस भी लिखा हुआ है पोस्टर में --

है चार पांच टेबल है और बहुत सारे चेयर भी रखी हुई है और एफ एलेवेन प्रो का पोस्टर भी लगा है।

और बड़े-बड़े गमले में पेड़ लगे हैं। छोटे गमले भी रखे हैं जिसमें पौधे लगे हैं।

और एक फोटो भी लगी हुई है दीवाल में और स्विच बोर्ड भी है और एक खिड़की भी है पीछे दरवाज़ा भी--

यहाँ पे एक मॉल है। बहोत सारे शैम्पू रखे हैं। सेनिटाइजर रखे हैं। लाइफबॉय का सेनिटाइजर है।

सामने एक आदमी अमरूद पकड़े हुए खड़ा है उसमे दो पत्तिया लगीं है।

पेड़ और पीछे छत में पाइप भी लगा हुवा है और छत की किनारे पर बहोत सारे गमले भी रखे हैं और सूरज की किरणें --

बहोत दूर से आ रही हैं।

ये एक कार्यालय है। मुज़्ज़फरनगर विकास प्राधिकरण का बोर्ड भी लगा हुआ है ऊपर नीले कलर का।

यहाँ पे बोहोत बड़ा सा मैदान है और सामने एक ईटा रखा हुआ है बड़ा सा और बोहोत हरी घासे हैं और बोहोत सारे बच्चे --

आमने एक नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है एच.डी.एफ.सी. बैंक का।

स्कूटी खड़ी है और बहोत सारे आदमी भी चल रहे हैं। चेयर रखी हुई है।

सामने दो मोबाइल की शॉप है एक सैमसंग कंपनी की है एक ओप्पो कंपनी की है।

सामने एक बड़ा सा टावर है। एक पेड़ लगा हुआ है जिसमे कोई इको भी पत्ती नहीं है और बोहोत सारे पेड़ पीछे हैं घने --

और एक नीचे यहाँ पे जले हुए का खेत है और सामने एक पूरा हरियाली हरी हरी-हरी घासें हैं।

और दो-तीन लोग बाहर खड़े हैं। बोहोत सारी बाइके खड़ी हुई हैं और ऊपर एक घर भी है और उसमे डिज़ाइन बनी हुई है गोल-गोल।

दो बड़े टावर हैं और बगल में घर भी है। नीचे हरी-भरी थोड़ी घासें हैं।

और जाली भी लगी है रोड पे थोड़ा पानी भी पड़ा हुवा है।